पीछे बोहोत सारा घर दिख रहा है छोटा-छोटा एक बैनर लगा हुआ है पेड़ दिख रहा है यहां पे एण्ड यहां पे ज़ेबरा लाइन क्रॉसिंग दिख रहा है रोड में।

ये एक मुस्लिम का मस्जिद है एंड स्टार है एंड चाँद है चाँद है एंड यहाँ पर मुसलमान का मस्जिद है। यहां पे डिजाइन करा हुआ है।

बाडी दिख रहा है यहाँ पे एंड पेड़ है एंड --

रीसेप्शन है फिर लैपटॉप रखा हुआ है एक फ़ोन-पे का क्यू_र कोड है चेयर है।

एने बच्चे आ रहे बेठने के लिए।

एंड यहाँ पे बहोत सारा मशीन है एकविप्मेंट है डंबल है।

चल रहे पैदल एंड यहा पे एक रिक्शा खड़ा हुआ है। यहा पे घर दिख रहा है। दुकान दिख रहा है एंड यहाँ पे सफ़ेद रंग का बाश खड़ा हुआ है।

पे एक सैलून दिख रहा है यहाँ पे टीवी दिख रहा है यहाँ पे फोन दिख रहा है यहाँ पे । एक आदमी यहाँ पे बाल कटा रहा है एंड यहाँ पे एक --

यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है। तीन सिलिंडर दिख रहा है। पर्दा दिख रहा है। यहाँ सफ़ेद रंग का बिल्डिंग है। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। आदमी यहाँं पे खड़ा हुआ है।